पीछे हरे रंग की टंकियां रखी हैं जिसमें पानी भरा हुआ है।

ऑफिस में एक लकड़ी का कैबिनेट रखा हुआ है उस कैबिनेट के पास नीले रंग की कुर्सियां रखी हैं।

और एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई है पीछे हमें एक और बस दिखाई दे रही है जिसका रंग लाल है।

ये चित्र एक होटल का है इसमें हमें सामने लाइटिंग दिखाई दे रही है।

चित्र होटल को अच्छे से सजाया हुआ है इसमें हमें मार्बल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर हम देख सकते हैं काली लाइटें लगी हैं जिसमें से सफेद रोशनी निकल रही है।

ट्रे के पास एक चाबी रखी हुई है ट्रे में एक चम्मच भी पड़ा है।

इस चित्र में हमें सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने काली जैकेट और काली पैंट पहनी हुई है।

दीवार पर सफेद और लाल फुग्गे लगे हैं एक खिड़की बनाई गई है यहां पर टेबल कुर्सियां रखी गई हैं यहां पे छह कुर्सियां हैं जो कि काले रंग की हैं।

कंपनीस का बोर्ड लगा हुआ है। ऐ_सी की डक दिखाई दे रही है और एक जगह लकी एंड गेट्स का--

येह चित्र में हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जोकि योगा कर रहे हैं।

सामने एक बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है जिसके नीचे डंबल रखे हैं डंबल का रंग नीला और हरा है।

एक तस्वीर लगी हुई है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं।

और जिओ का एयरटेल का यहां पर प्लान्स का स्टीकर लगा हुआ है।